और कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं जो की लग रहा है किसी आदमी सबका घर है।

सामने वाटर पार्क के आस पास बहुत सारे लोग इधर से उधर टहल रहे हैं और कुछ पानी में नहा रहे है।

सामने एक बस दिखाई दे रही है जोकि रेड और ब्लैक कलर का है।

सामने एक ट्रक दिखाई दे रहा है जिसमें की बहुत सारे बोरी डाला हुआ है।

सामने एक डॉक्टर का आई_सी_यू सेंटर जैसे दिखाई दे रहा--

उसके सामने एक बेसिन है और उसके बगल में एक ब्लू कलर का इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है।

बगल में एक पार्क टाइप का है जो की बोहोत ही हरा-भरा है और बोहोत सारे फूल लगाए हुए --

वृक्ष लगा हुआ है बड़ा बड़ा जो कि बहुत ही घना लग रहा और हर भरा लग रहा है।

यहां पे बहुत सारे लाइट लगी हुई है जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

सामने यह जगह किसी होटल का लग रहा है।

यह बिल्डिंग पीले कलर का है बिल्डिंग का बीच से एक गेट गया है जो जो कि रास्ते हैं कॉलेज की ओर जाने वाला।

सामने से साइड में एक सिढी लगा हुआ है जो की सेकंड फ्लोर पर चढ़ने के लिए है और ये रात का समय--

रोड के साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं जो की बहुत ही हरे भरे हैं।

सामने एक पोखर दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत ही ज्यादे पानी है।

ऊपर छत में सीलिंग फैन लगा हुआ है और एक टीचर आगे में सभी को कुछ समझाते हुए दिखाई दे।

में कुछ चेयर लगे हुए है बैठने के लिए उसके ऊपर फायर एग्जीक्यूशन लगा हुआ है।

ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ और एक व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ।

सामने एक दुकान है जिस पे बहुत सारे टीशर्ट वगैरा लगा हुआ है और भी बहुत सारे कलर के टीशर्ट वगैरा लगा हुआ है।

सामने एक रूम का कमरा दिखाई दे रहा है कैमरा जो की वाइट कलर का पूरा है।

उसके नीचे लिखा हुआ है डॉक्टर डी आर सिंह ।

सामने एक आदमी बेड पर लेटा हुआ है जो की लग रहा है कि बीमार है।

यहाँ नीचे कुछ पार्ट्स दिखाई वैलेट दिखाई दे रहे हैं जो की ब्लैक कलर का है।

यहां आगे में दीवाल पे कुछ लिखा हुआ है प्रदीप ट्रेडर्स मोबाइल नंबर नाइन फोर डबल जीरो थ्री सिक्स फोर टू नाइन और नीचे लिखा हुआ चैंपियन सीमेंट प्लस --

पीला कलर का कुछ है डब्बा बहुत सारा रखा हुआ है।